यहाँ एक नदी है उस नदी में एक मंदिर बना हुआ है जो सफेद रंग से पेंट है। मंदिर की चोटी बड़ी बनी हुई है।

उन पे ताला लगा हुआ है दीवार पर कुछ जानकारियां लिखी हुई हैं सामने खंभे बने हुए हैं ग्राउंड है।

लाइट के खंबे लगे हुए है जिन पे से लाइट के तार गए हुए हैं | एक ट्रेन भी जा रही है | नीचे गिट्टी डली हुई है ।

नदी पास बहोत सारे जीने बने हुए हैं। घना जंगल भी बना हुआ है। कुछ लोग हैं जो नदी किनारे खड़े हुए हैं और वहाँ पेड़ भी लगे हुए हैं और बहोत बड़ा वहाँ पे एक --

जिसमें एक पर्सन बैठा हुआ है और सामने बैठने के लिए सीट बनी हुई है और जिने बने हुए हैं|